यहाँ पर एक दुकान दिखाई दे रही है इसमें दीवारों का कलर ग्रीन सिल्वर ग्रे दिखाई दे रहा है यहाँ पर कई सारा काँच का फर्नीचर दिखाई दे रहा है और लकड़ी का भी फर्नीचर दिखाई दे रहा है।